के यह एक पूरी बिल्डिंग पत्थर से बनी हुई है। इसका कलर हल्का भूरे रंग का है एवं आसपास बोहोत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है जिसमें कई पेड़ पौधे एवं घास हैं। ऊपर एक आसमान भी दिख रहा --

एक खाली ग्राउन्ड भी दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी कुर्सी रखी हुई है एवं इसमे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है इनकी पत्तियों का कलर ग्रीन है एवं हमे खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक रूम है रूम के अंदर दो लड़के खड़े हुए हैं और एक लड़का गेट के उस साइड खड़ा हुआ है तो दूसरा लड़का गेट के इस साइड खड़ा हुआ है इस -----

और नदी में बहुत सारी बोट भी दिखाई दे रहीं हैं। बोटों में कुछ बोट में कुछ सिंगल है तो कुछ बोट में बहुत सारे लोग डबल भी है।